ओ बिहाला ऐ चेक न अच्छा सजावट करेल छे गुलदस्ता भी सजावट मे देने के जाके बल्ब भी लगे छे की सोफ़ा छे कितना सुंदर लगे हे देखन मे--

जेकी पार अ छे कितना सुंदर लगे छे देखे में आदमी के फुल भी छे गाछ भी छे आदमी भी छे--

ये कोनो अच्छा जगह छे कितना अच्छा घर बनेल छे बंगला और कितना फुल के गाछ भी छे और आदमी भी फोटो खिचे छे अन के औरा ऊपर भी आदमी भी खड़ा छे।